यह मंदिर बहुत ही सुन्दर वह विशाल मंदिर है यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है।

जिस पर लर्न ऑल टाइप्स ऑफ डांस एरोबिक्स एण्ड जुम्बा लिखा हुआ हैं यह एक डांस अकादमी का बोर्ड हैं और यहाँ पर बहोत से लोग डांस सीखने आते हैं।

नदी है यह नदी बहुत ही बड़ी और गहरी है इस नदी मे बहुत से जीव जन्तु भी रहते है।

यह एक रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट मे बहुत सारी टेबल और कुर्सियाँ है।

बिल्डिंग के गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बिट्स एण्ड डांस अकादेमी लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत से लोग डांस सीखने के लिए आते है।

और इन ट्रकों में बहुत सारा सामान भरा सकता है और ये ट्रक भरा कर बहुत सी जगह पर सामान भेजते है।

यहाँ पर एक डेयरी बनी हुई है इस डेयरी का नाम गुप्ता डेयरी है।